और इस सर्विस सेंटर के अंदर--

और इस पार्क के अंदर काफी सारे लोग और बच्चे खेल रहे हैं।

इस स्कूल के आस पास में काफी सारे द्रख्त भी लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर एक पारक है जो--

काफी सारे पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।

और इस पारक के अंदर काफी सारे और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

काफी सारी बुक्स अलग अलग प्रकार की पड़ी हुई है।

ब्रांड्स कपड़ों के ब्रांडस हैं एक तो ट्रेंड्स और दूसरा रिलायंस डिजिटल है और इस--